और ये जाली वाला गेट है जिसका कलर ब्लू है।

और इसके पीछे भी बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है और --

यह एक बहुत ही सुंदर घर है।

ये अनार अभी कच्चे हैं और उ बहुत सारे उनके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं और एक बच्चा--

सामने एक डमी बीठाई हुई है और उसके नीचे स्कल्ट और ब्लैक कुर्ती डाली हुई है और साथ में एक डमी खड़ी हुई है जिसके--

सामने एक बहोत बड़ा गेट है।

और गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

लाइटे भी बहुत सारी लगी हुई है और सामने बहोत सारी ग्रील लगी हुई है।

यहां जिसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ है और इस बैनर के ऊपर अपना डी_जे साउंड सर्विस लाइव शो लिखा हुआ है।

सामने बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

तीन व्यक्ति खड़े हुए है और तीन बैठे हुए हैं आग सेक रहे है।

और साइड में हल्दी का पूरा सेटअप लगा हुआ --

यह दिखने में बहोत ही सुंदर लग रहे हैं और इसके ऊपर--

और उसके ऊपर दो बॉक्स रखे गए हैं और सामने तीन पोस्टर लगे हुए--

और एक व्यक्ति ने ग्रीन कलर की शर्ट और नीचे ब्लैक कलर की पैंट डाली हुई है और उसके स्किन कलर की कैप और--

और कई केक भी पड़े हुए हैं और--

एक बच्चा वहां खड़ा हुआ है और उसके ब्लैक कलर की टी शर्ट और जींस डाली हुई है।

सैन गेट्टा और भी बहुत कुछ लिखा हु--